बोहोत सारे लकड़ी के बल्ले लगे पड़े हैं। उसमें बोहोत सारे दिखाई दे रहे हैं। हरे-हरे छोटे-छोटे से घासें दिखाई --

जी के आप देख रहे हैं सामने एक ड्राज रखी हुई है बोहत बड़ी ब्राउन कलर का पेंट हुआ हुआ है ऊपर की साइड ।